पेड़ पौधा छे बड़ा बाठा ही भठा है पहाड़ छे बहुत सारो अंदर लोग घुमण आरा है।

इक माइन गाड़ी साइड मे दुकान एक आदमी दिखे है ऊपर सिमट सी लगरी है तार जरा है खंभा लग रा है।

इस चित्र मे --